बगल में एक घर बना हुआ है।

नीचे पटरी में गिट्टी डाली गई है।

सामने बहोत सारी दुकानें लगी हुई है।

यहां बहुत सारी जिप्सी खड़ी हुई है और बहुत सारे सैलान--

बगल में बहोत सारी बाइक खड़ी हुई है।

यह एक बहोत बड़ा हाल सामने दिखाई दे रहा है जहां बहोत सारे लोग नीचे मैट बिछा के बैठे हुए हैं।

सामने एक बहोत बड़ा डैम बना हुआ है इसके साइड में एक बहोत बड़ा नदी है।

बिल्डिंग के ऊपर द कॉफी टाउन लिखा हुआ है यह एक कॉफी हाउस है।